यहां पर मंदिल दिखाई दे रहा है।

यहां पर लाइब्रेरी लग रहा है देखने में और--

स्कूल के बाहर झंडा भी लहराया गया है।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है पेड़ बहोत बड़ा--

और व्यक्ति भी लेने वाले देख रहे हैं।